और यहां एक कुछ तो पड़ा हुआ है वाइट रंग का उसमें लिखा है श्री उमिया एफ टेक मशीन्स मतलब वह मशीन्स है।

यहां हरे हरे रोड है और यहां एक जूता भी पड़ा हुआ दिख रहा है।

और किसी का तो दो हाथ यहां पर दिखाई दे रहा है।

और यहां गेट लगाया हुआ है लाल रंग का और नीले रंग का और उसे गेट पर लिखा है कृपया बिना अनुमति के अंदर प्रवेश न करें सावधान।

और यहां हरे रंग का पीछे से थोड़ा पेड़ का न--

और यह बहोत ऊंचाई पर है और यहां ऊंचाई से बोहोत हरे-हरे पेड़ दिख रहे हे।

एक व्हाइट कलर की एक ब्राउन कलर की और दूसरी भी व्हाइट एंड ब्राउन कलर की और नीचे से लाल रंग की मैट लगाई हुई है।

और यहाँ पर बहोत सारे पेड़ भी है हरे रंग के।

यह एक स्कूल है ये स्कूल का नाम एस_एस_एम_एस_जी_एम_आई_एच है जी_एच स्कूल है।

और यह कीड़े पानी जैसे दिख रहे हैं।

वह लड़का इवेंट मैनेजर दिखाई दे रहा है उसने एक बर्थडे के लिए यहां डेकोरेशन किया है।